चित्र में एक इमारत दिखाई दे रही है मे सामने एक बडासा हरा पेड़ है इमारत पे दो सोलार पैनल दिखाई दे रहे है।

चित्र मे एक इमारत दिखाई दे रही है जो की मस्जिद जैसी दिख रही है एक आदमी मस्जिद के अंदर जा रहा है दो औरते मस्जिद के बाहर बैठी हुई है।

चित्र मे मस्जिद दिखाई दे रही है जिसके उपर एक लैम्प लगा हुआ है मंजीत के बाजुमे कुच्छ पेड़ दिखाई दे रहे है।

आगे एक पर्वत दिखाई पड़ रहा है सूरज भी दिखाई दे रहा--

चित्र में एक लॉन दिखाई दे रहा है में बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।